साइड में दो चेयर्स पड़ी हुई हैं।

और पीछे छोटे छोटे अलमारी के खाने बने हुए हैं।

साथ में दरवाजा भी दिख रहा है।

ये एक शोरूम दिख रहा है जिसका नाम है सीड शॉपिंग ।

साइड में दीवार पर एक टी_वी लगा हैं।

कुछ स्काई ब्लू में है कुछ नीले रंग में दिख रही है।

साथ में एक मोटर पड़ी है जो कि स्काई ब्लू कलर की है।

लड़कों ने बैलेंस बनाया हुआ है और एक लड़के को पकड़ा हुआ है।

जहां पर बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं बॉयज के कपड़े हैं।

शोरूम लिख दिख रहा है जहां पर कपड़े भी रखे हुए हैं और जूते भी रखे हुए हैं।

और छत पर बहोत सारे पंखे टंगे हुए हैं।

और नीचे टैटूस बनाने के लिए भी बना हुआ है।

इन पर हरे रंग की घास भी लगी हुई है।